एक गोदरेज है उसमें बुक रखा हुआ है।

कुछ गुब्बारे भी लगे हुए है।

और लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

इधर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और इधर पानी आ रहा है।

उसके अंदर कुछ बुके रखी हुई हैं।